दो आदमी बैठे हैं काउंटर के अंदर एक आदमी और सामने।

इस फोटो में एक बड़ा सा कमरा है।

सामने में नीले रंग का सटर लगा हुआ है।

सामने एक वॉटर का बोटल रखा हुआ है और बड़ा सा बोर्ड बना है।

रैक पर बहोत सारे साड़ी रखे हुए हैं जो अलग अलग रंग के हैं सीलिंग में बहोत सारे ट्यूबलाइट जल रहे और लाइट जल रहे हैं।

वो सफेद रंग के है सीलिंग का भी रंग सफेद है और नीचे रैक पे सनमाइका चिपका हुआ है जो भूरे रंग का है।

बहुत सारा सामान रखे हुए है जो कि पीला और नीला और काला रंग का है सीलिंग पूरा सफेद है।

इस फोटो में एक बड़ा सा घर है जिसके दीवाल का रंग नीला है और नीचे जमीन पे टाइल्स लगा हुआ है।

जो की सफेद रंग का है और वो टाइल्स पे पुरा शाइन मार रहा है सामने ही एक आदमी है और ये एक पलंग का सेटिंग कर रहा है।

जोकी सफेद रंग का है और उसके पिलर को भूरे रंग से पेंट किया हुआ है।

एक ने गुलाबी और सफेद रंग का शर्ट पहना है।

और बहोत सारे साबुन वाबुन के डब्बे हैं।

इस फोटो में एक दुकान है जिसमें एक रैक है जो की सफेद रंग का है।

और इधर रैक पे सनमाइका चिपका हुआ है।

बहुत सारे छोटे बड़े लाल अनार है और बहुत सारे संतरा रखे हुए हैं।

पीले रंग के काफी सारे केले हैं उधर सेब लटकाए हुए है।